और इस मस्जिद के ऊपर यह देखिए कुछ झंडे वागेरा से लगे हुए हैं।

यहाँ पे ये सामने देखिये यहाँ पे ये गणपति जी की मूर्ति है जो की बिराज मान है।

और यहाँ पे यह हल्के हलके सी चिल्ली की पेड़ हैं।

इ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग दिख रहा है सामने जो की गवर्नमेंट इंजीन इंजीनियरिंग कॉलेज है।

और यहाँ पे ये जो हैं की जेंट्स गर्ल्स सभी प्रकार के लोगो के यहाँ पे कपडे मिलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं।

यहाँ पे आप देख सकते है ये जो लाइब्रेरी की फोटो यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे काफी सारे बच्चे है।

यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उको बैंक का ए. टी. एम. ये जो ए. टी. एम. हैं जो की चोबिस घंटे के लिए--

ये राजा महाराजाओ की जमाने का किला होगा उनके--

विस्क इश्च मिस्क की बात भी कही गई होगी।

यहाँ पे आप देख सकते है यह हम यह हमदा नदी है यह देखिये इस हमदा नदी में --

काफी सारे लोग है जोकि यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं।

ये जो फूल मार्किट है जो कि काफी बड़ा फूल मार्किट है यहाँ पे देखिये यहाँ पे काफी सारे लोग है।

यह यहाँ पे फूलो की काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो की फूल खरीदने के लिए आए हुए हैं।

यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे ये क्या ये मॉल है यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे--

इस कफ यह जो कॉफ़ी शॉप जोकि काफी बड़ा कॉफ़ी शॉप है आप देख सकते है लाइटिंग वगैरह लगी हुई है कॉफ़ी शॉप में--

काफी सारी भीड़ है और ऊपर आप देख सकते है यहाँ पे लाइटिंग के वायर लगे हुए है यह देखिये आप --

ये देखिये ये जो यहाँ का सर्विस का स्टाफ हैं।